सामने एक ऑफिस दिखाई दे रहा है ऑफिस बहोत ही बड़ा दिखाई दे रहा है।

मने एक शोरूम दिखाई दे रहा है शोरूम बहोत ही बड़ा दिखाई दे रहा है।